बिल्डिंग है जो हाले फिलहाल का बना हुआ है और ये बिल्डिंग में ये बहुत बड़ा-बड़ा गेट दिया हुआ है एक ही रूम में दो दो ठो गेट है और ये जो बिल्डिंग है वो सब पिलर पर खड़ा हुआ है।